यह एक राखी दुकान का दृश्य है जिसमें काफी किस्म के राखी टांगे गए हैं।

यह एक महालक्ष्मी जनरल स्टोर का दृश्य है।

एक बड़े से नदी का दृश्य है जिसमें एक व्य--

की पत्थर पे बैठ कर फोटो खींचा रहा है।

बगल में बहुत सारे मसालो की भी बोनिया रखी हुई है और इसमें चार--

और काफी सारे ईंटें रखे हुए हैं और पोल भी लगा हुआ है।

जो जिसमें काफी सारे छोटे बड़े फूल भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं।

और पीछे की दीवाल का कलर यलो है।

और पीछे की साइड में एक छोटी सी घर में एक खिड़की नजर आ रही है।

और पीछे की दीवार का कलर येलो है और उसपे एक पोस्टर लगाया गया है।

और बाहर की साइड में काफी व्यक्ति और बच्चे नजर आ रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है जिसमें छेह व्यक्ति नजर आ रहे हैं।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

नीचे के साइड में कॉफी किसीम के बस लगाया गए हैं जिसका कलर येलो और वाइट है और सब मे शीशे लगाए गए है।

यह एक लज़ीज़ बिरयानी दुकान का दृश्य है जो नया खुला है।

बाहर की साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यह एक बड़े से टावर का दृश्य है जिसमें काफी सारे छोटे बड़े डिब्बे नजर आ रहे हैं।

और एक कुर्सी भी लगी हुई है और पीछे की दीवाल पे काफी सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

और उपर की छत पे एक पंखा लगाया गया है।

यह एक डांस शो का दृश्य है जिसपे काफी सारे बच्चे लोग डांस कर रहे--

यह एक बड़े से नदी का दृश्य है जिसमें काफी सारे बच्चे लोग नजर आ रहे हैं।

सभी बच्चों ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है और पीछे की साइड में एक व्यक्ति लाल कलर का कपड़ा पहना है।

यह एक बड़े से बाग का दृश्य है जिसमें काफी बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगाए गए हैं।

और इसके नीचे पौधे भी लगाए गए हैं और काफी सारे--